बाहर आ रहा है अंदर की तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में शादी का डेकोरेशन वगैर हो रखा है।

घर पुराना हो गया है जिससे घर के ऊपर--

इस तस्वीर में होटल का नजारा दिखाया गया है।

झंडा लगा हुआ है ऊपर आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर में माई टी_वी_एस दिख रहा है बाएं के तरफ बहोत सारे बाइक खड़ी हुई है।

और एक औरत बीच में खड़ी है व्हाइट कलर के कपड़ा पहन के।

इस तस्वीर में सादी का कार्यक्रम दिख रहा है आगे।